यहाँ पर मुझे एक हॉल दिख रहा है वो ग्रीन कलर का है लाइट ग्रीन --

यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है वो मुझे सिल्वर कलर की दिखाई दे रही है ।

यहाँ पर मुझे वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और ब्रा ब्राउन कलर का कुछ टेबल --

ए मुझे ऊपर छत से मुझे ब्लैक कलर का दिख रहा है यहाँ लाइट जल रही है और यहाँ पे येल्लो कलर भी मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ।

और ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है कुछ चित्र भी बना हुआ है ये यहाँ पर वो--

और यहाँ पर बस के ऊपर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर रोड है यहाँ पर ब्राउन कलर का ऑटो है ।

यहाँ पर मुझे एक लोग खोड़ा दिखाई दे रहा है वो कुछ मैच पे दे रहा है।

ए उम गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में मुझे ग्रीन कलर के पेड़ भी दिख रहे हैं वाइट कलर --

मुझे साउंड की लग रही है यहाँ पर ब्लैक वाइट येल्लो ऑरेंज ग्रीन --

और रेड क्रीम भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे आसमान दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर का --

यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और लेडीजे खड़ी हुई है ।

ब्लैक टी-शर्ट और ब्लू पैंट पहना हुआ है और यहाँ पर मुझे ऐसा सामान लग रहा है वो लेडी से ले रही है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दूबा का पेड़ भी है और यहाँ मकान भी दिखाई दे रहा है ईंट का।

पहखे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं छोटी-छोटी डिब्बियां हैं।

और यहाँ पर मुझे पाउच में भी रखे हुए हैं नीचे भी दिख रहा है ।

एक थैला पड़ा हुआ हैं थैले में कुछ सामान रखा हुआ हैं कुछ इधर सा--

और नीचे सामान भी बहुत सारा रखा हुआ है और यहाँ पर --

यहाँ पर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग मुझे मिट्टी कलर दिख रही है और रेड दिख रही है ब्लैक दिख रही है खिड़कियाँ --

कार के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है और यहाँ पर मुझे जंगल पेड़ पौधे दिखाई--